और पंखे लगे है हॉल मे बहुत सारे मशीन है। जो लोहे --

एक बोर्ड है बोर्ड पे हॅप्पी बर्थडे लिखा है और आस-पास बहुत सारे फुग्गे है।

कुछ सफ़ेद कलर के है और कुछ नारंगी कलर के है बहुत सारी लाइट जली है बोर्ड के पास कुर्सी रखी है।

यह एक बड़ासा हॉल है उसमे लोहे की पाईप लगे है और टीन लगी है।

बोरिके पास एक वॉटर कूलर रखा है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।